फिश शॉप को देख रहे है जिसपर बहोत ही बड़ी बड़ी मछलियां रखी हुई हैं।

एक बड़ी सी हवेली को--

जिस पर बहुत ही सुंदर आकृतियां बनी हुई है।

साथ ही बड़ी बड़ी सीढ़ियां दिख रही है जिस पर सफेद और गेरू रंग--

ऊपर फॉल सीलिंग भीं हुई है।

और कुछ फैन भी टंगे हुए हैं।

यहां पर हम सामने एक नदी को देख रहे हैं।

कपड़े की दुकान देख रहे है।

दीवार पर बहोत सुंदर पेंटिंग की गई है।

फूल सब्जियां बिक्ते हुए नजर आ रहे हैं।

बाहर बहोत सी गाड़ियां पार्क है।

साड़ी पेहने हुए सामने से आ रही है जिसने मुंह पर मास्क लगाया--

सामने लाल रंग के फूल भी लगे हुए हैं।

एक गुलाबी रंग की दूसरे ने नीले रंग की शर्ट पहनी हुई है साथ ही दोनों ने एक--

दलदल सा तालाब भी दिखाई दे रहा है।

जिसका पानी का रंग काई जैसा है।

कुछ लोग खरीदारी करते हुए नजर आ रहे हैं।